वहीं पे कॉर्नर पे एक गेट भी है वहां पे ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं ऑरेंज कलर की कुर्सी पे--

लकड़ी की समान बहुत सारी बनाई हुई रखी हुई है।

वहीं पे एक बोतल माजा का रखा हुआ है।

वहीं पे एक कुर्सी भी है जो कि ब्राउन कलर की है।

इस दृश्य में एक मैदान है जिसकी जमीन ब्राउन कलर की है।

वहीं पर पांच ट्रैक्टर लगे हुए हैं।

यह दृश्य एक किचन की है जहां पे तीन गैस है।

वहीं पे ढेर सारी कुर्सियां रखी हुई है जो की उजले और काले रंग की है।

इस दृश्य में एक शादी का स्टेज है यहां पे सजावट की हुई है।

यह दृश्य एक दुकान की है जहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है उजले कलर की टीशर्ट पहने।

उसके ऊपर मैट्रस बिछी हुई है काले और ब्लू कलर की।

वहीं पे ऊपर में सीलिंग पे दो पंखे लगे हुए हैं।

दृश्य में एक हाल है जिसकी दीवाल उजली रंग की है।

वहीं पर एक बड़ा सा झूमर भी लगा हुआ है।